ऊपर छोटे छोटे प्लांट लगाया हुआ है और पीछे का दीवार का कलर ब्राउन कलर है।

मुझे यहां एक बहोत बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और सामने एक पीला कलर का स्कूल बहन भी दिखाई दे रहा है।

एक टॉवल है जो पिंक और वाइट कलर का है।

एक इंसान आगे खड़ा है जो काला जैकेट पहना है और सामने एक बहुत बड़ा गच्छी भी है।

यहां मुझे एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां बहोत से लोग दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर बहुत से लाइन के तार दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

ये तीन मर्द है पीछे चार महिलाएं हैं।

आगे थोड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।